मुझे इस फोटो सामने को एक घर बना हुआ दिखाई दो नीले घर बना ये पूरा घर पीले कलर का पुता हुआ दिखाई दे रहा है साइड बे साइड --

मुझे इस फोटो के सामने एक ओर एक डम बना हुआ दिखाई दे रहा है एक डिगरी--

और कई सारे हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे एक तालाब बना हुआ जो तालाब में--

लटके लटकाए गए हैं इसमें लटके हुए दिखाई दे रहे हैं सामने के ओर।

इस फोटो पे मुझे एक बहोत बड़ा होटल दिखाई दे रहा है।

यहां पास करीबन बहोत से लोग खड़े हुए है ऑटो भी यहां खड़ी हुई हैं बाहर के तरफ में बहोत सारे कंटेनर रखे हुए हैं।

चारों ओर कैमरे लगाए गए हैं और यहां पर बहुत सारी जाली लगी हुई हैं।

कई सारी कारें खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं एक लाइन से कई सारी कारें खड़ी हुई हैं।

इंसान बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में सामने की ओर कई सारे कपड़े एक कपड़े की दुकान दिखाई दे रही हैं जिस कपड़े की दुकान पे कई सारे कपड़े वपड़े टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं कपड़े फिर कपड़े रखे हुए बैंच पर कई सारे कपड़े टंगे हुए दिखाई दे--

ऊपर की ओर व्हाइट कलर लाइटिंग जलती हुई दिखाई दे रही है और ऊपर की ओर व्हाइट कलर से पोता हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे दिवालो में मीटर लगे हुए दिखाइ दे रहे हैं। वायरिंग की हुई दिखाइ दे रहे है।

नीचे की ओर एक दुकान करके दिखाई दे रही है सामने की ओर एक एक-एक सीढ़ी बनी हुई है।

मुझे इस फोटो में सामने नदी बनी हुई दिखाई दे रही है एक जो पत्थरों से टकराकर नीचे के और पानी बेहता हुआ दिखाई दे रहा है आजू बाजू पेड़ पौधे लगे दिखाई दे रहे--

सामने की ओर एक इंसान सामान सा देता हुआ दिखाई दे रहा है एक इंसान कुर्सी में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है सामने की ओर।

हरे भरे कई सारे पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं सामने।

कितने पर्दे वर्दे लगाए गए हैं बीम के बीम में कई सारे बीम लगी हुई है जिसमें व्हाइट कलर के पर्दे लगाए हुए दिखाई दे रहे है।

एक एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान दिखाई दे रही। जेसे इलेक्ट्रॉनिक के बॉक्स वोक्स रखे हैं। निचे की ओर वाइट कलर की टाइल्स लगी दिखई दे रही हैं। ऊपर की और वाइट कलर की लाइट लगी हुई दिखाई दे रही। वाइट कलर का पटा हुआ दिखाई ऊपर की ओर